बने हुए हैं ऊपर काला सफेद आसमान दिख रहा है और एक--

यहां एक स्टेज दिख रहा है जिसमें पीछे वो नीले कलर का पर्दा लगा है और ऊपर--